इसमे जो खिड़कियाँ बनी हुई है उसमे ग्रीन कलर के कांच लगे हुए हैं आसपास और भी--

यहां पर एक खेत है और खेत किनारे बहोत सारी घास लगी हुई है बहोत से--